साइड में टी_वी और सोफा भी दिखाई दे रहा है।

ये एक घर का रूम है और यह रूम को व्हाइट कलर से पेंट करके है।

घर का बाहर में बहुत सारा ऑटो दिखाई दे रहा है जो की वाइट और कलर में दिखाई दे रहा है।

गाड़ी के सामने में आदमी भी दिखाई दे रहा है।

कार्पेट का ऊपर मे आदमी बैठ के दिखाई दे रहा है जो कि ये लोग योगा कर के है।

यहां में एक घर दिखाई दे रहा है जोकि ये घर को पत्ता और बंबू से बनाया गया है।

ये पानी का आसपास में भी बहुत ज्यादा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

फील्ड का सामने में बहुत ज्यादा घर दिखाई दे रहा है जोकि वाइट कलर में है।

घर का आस पास में बहुत सारा पेर दिखाई दे रहा है।

घर का सामने में एक वॉल भी है जो की वाइट कलर में है।

हॉल में कुछ कुछ लिख के भी दिखाई दे रहा है।

बाहर में भी बहुत सारा गारी दिखाई दे रहा है जो की वाइट कलर में है।

यहां में स्कूल दिखाई दे रहा है जो की व्हाइट कलर मे है।

वोलो का सामने में बहुत सारा चार भी है।

हॉल में बहोत सारा माला लगा के भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में आदमी भी दिखाई दे रहा है और यह सामान जो अलग अलग कलर में है।

पहाड़ पर बहोत सारा इलेक्ट्रिक पोल और वायर भी दिखाई दे रहा है।

ये एक बाल काटने वाला दुकान है और ये दुकान को व्हाईट कलर से पेंट कर के है।

आदमी का बाल में बहोत सारा क्लिप भी दिखाई दे रहा है।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

सीली भी दिखाई दे रहा है अंदर जाने का।